यह एक कपड़ो का शोरूम है यहां पे बहोत सारे कपड़े रखे हुए है।

यहाँ पर बाहर की ओर कुछ ईटे रखी हुई है और एक चेयर भी रखी हुई है बाहर मजदूर अपना काम कर रहे है।